वाहन आधारिक तौर पर बिहार पुलिस द्वारा उपयोग किया जाता है।

को एक अ दांत साफ करने के लिए कोलगेट --

झंडे लगे हुए है जो धार्मिक और सांस्कृतिक रखते हैं।

यह तस्वीर एक दो हजार एकग्यारह मोटर टाटा इंडिका --

यह तस्वीर एक पार्किंग क्षेत्र की है जिसमें कई वाहन जैसे की मोटरसाइकिल और कारे खड़ी हैं।

साफ साफ दिखाई दे रहा है कि रेलवे स्टेशन के पास एक घर बना हुआ है जिसके ऊपर दो काली टंकी पानी की टंकी हैं।

यह मोर मन को मोहित करने वाली चीजे में आता है।

यह तस्वीर एक स्कूल प्लेग्राउंड की लग रही है जहां की बच्चे खो खो खेल रहे हैं इस तस्वीर में--

इस तस्वीर में देखा जा सकता हैं ये तस्वीर एक सादी की है।